यहां पर एक छोटा सा केबिन है केबिन के अंदर यहां पर एक--

बहोत सारा केबिन के ऊपर सॉकेट लगे हुए हैं चार्जिंग करने के लिए यहां पर कुछ नंबर डले हुए हैं।

यहां पर कुछ बैग रखे हुए हैं दो यहां पर दो चार किताबें रखी है ऊपर--

गोल गोल चॉकलेट है यहां पर किटकैट है।

यहा पर सामने एक कोचिंग सेंटर है जिसके स बगल में एक यहां पर गाड़ी खड़ी हुई है सफेद रंग की जिसके सामने यहां पर बोनट पड़ा हुआ है हेडलाइट पड़ी है लाल और सफेद दो हेडलाइट है सामने --

यहां पर एक छोटा सा पेड़ है जिसकी बाउंड्री बना रखी है ईंट से पीछे दो कुर्सियां पड़ी हुई हैं एक स्टूल पड़ा है पीछे दो तीन गाड़ियां और खड़ी है। साइकिलें हैं।

यहाँ पर दो चार गमले लटके हुए है एक लालटेन लटकी हुई है।

यहां पर लाइटे लगी हुई है बहुत सारी रंग बिरंगी यहां पर एक पंखा लगा हुआ है एक ए_सी लगी हुई है।

सामने एक बहुत अच्छी सी आलमारी बना रखी है जिसके अंदर बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं अंदर दो आदमी खड़े हैं।

यहाँ पर एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे कैबिन बने हुए हैं जिनमें सारे कैबिन में यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं बहुत सारे कागज रखे हुए है।

जो कि यह फोटो खींच रहा है पीछे यहां पर बहोत शीशे लगे हुए हैं।

यहां पर एक रोड है रोड के बगल में बहुत सारी दुकानें हैं।

रोड पर बहुत सारी बाईकें चल रही है बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं यहां पर दुकान पे दो आदमी खड़े हैं।

यहां पर एक गोदाम है जिसमें बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

और यहां पे कार भी धूल रही है।

और यहां पर एक किवाड़ खुले हुए है जिन पे नीला रंग हो रहा है।